लेफ्ट में ढेर सारे बाइक कतार वाइस खड़े किये गए है।

पीछे ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इनमें ईंटे से क्यारी बनाई हुई है और छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

कुछ लोग माथे पे सफेद टोपी पहने हुए है कुछ बेग टांगे हुए है।

जिम में ब्ल्यू लाइट जल रही है। एक लड़का हाथ पे हाथ दिए खड़ा है।

जो गोल्डन कलर का है लेफ्ट में एक कैमरा लगा हुआ है।

एक नाव मैरून कलर का है एक सफेद कलर का है और मैरून कलर का पट्टी किया हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट का तस्वीर हैजहां पर एक लाइन से वाइट कलर का बल्ब लगाया हुआ हैसीलिंग में।

का कलर ग्रे है सामने ढेर सारे सामान टंगी हुई है।

आमने बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है जिसका कलर पीला है।

यह एक बड़े से कपड़े दुकान का तस्वीर है। जिसके सीलिंग में ढेर सारे बल्ब जल रहे हैं।

कोने में एक दराज रखी हुई है उसके सामने दो कुर्सी है।

सीलिंग में रिंग लाइट्स लगी हुई हैं काफी साफ सुथरा है।

नीचे ढ़ेर सारे कागज और प्लास्टिक के टुकड़े पड़े हुए हैं।

सामने बड़ा सा स्टेज बना हुआ है जिस पे डेकोरेसन किया गया है।

अंदर कुरकुरे दिख रहा है ढेर सारे नकली मूर्तियां खड़ी है।

सीट रखा हुआ है पीछे दीवाल का कलर सफेद है।

बास दिख रहा है घर का कलर आसमानी है।

उसके ऊपर एक कपड़ा का टुकड़ा रखा हुआ है नीचे में एक चप्पल रखा हुआ है लेफ्ट में और भी ढेर सारा समान रखा हुआ है।

सामने दो स्टेपलर है एक टॉर्च रखी हुई है एक शीशे का गोला रखा हुआ है।

न्यू तेज सैलून लिखा हुआ है बाहर कुछ आदमी बैठे हुए हैं कुछ खड़े हैं।

और एक ब्लैक कलर का मूर्ति है सामने एक झुमर लगा हुआ है।